नल बहुत अच्छा लग रहा है। किवाड़ी है खिड़की है शीशा का लगा हुआ है।

पिकअप लगा हुआ है। चारों तरफ पेड़-पौधे हैं हरे भरे हैं।

कपड़े का दूकान है। दूकान बहुत अच्छा है। कपड़े कईं कलर के हैं। टीशर्ट दिख रहे हैं। शर्ट को सजा के रखा गया है।

खिड़की है गेट है जो खुला है दिखने में अच्छा लग रहा है।